आदमी योगा कर रहे हैं।

जंगल दिखाई दे रहा है.

ईस्कूटी दिखाई दे रहा है. औउ--

दुकान दिखाए दे रहा है सामन स्टोर जिसमें फेयरलोवली दिखाए दे रहा है.

बस दिखाई दे रहा है।

ये स्कूल बस दिखाई दे रहा है.

येलो कलर का एक पौधा दिख रहा है.

यहाँ पर बहुत सारा पौधा लगा है।

सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

रूम दिखाई दे रहा है।

खिड़की दिखाई दे रहा हैं.

बाईक दिखाई दे रहा है.

एक आदमी दिखाए दे रहे है जिसमें काम कर रहे हैं.